बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत बड़का है।

खाना-उना खाए के पेंटिंग उन्टिंग --

बगल में स्कूल येथी है |